ब्लैकबोर्ड पे कुछ लिखा है।

यहां बहुत सी सब्जिए हैं।

चिप्सेस के पैकेट वगैरा हैं।

यहां बहुत से लोग हैं।

और ये एक पहाड़ी इलाका है।

यहां बहोत सारी भैंसे हैं।

टॉप हाफ है लाइट है जल रही है।

जंगल इलाका लग रहा है।